इस चित्र में हमें एक कार गैरेज नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक हरिओम कंपलेक्स नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें तीन बच्चे नजर आ रहें हैं।

पहाड़ी दिखाई दे रही है नदी का दृश्य बहुत सुंदर है।

दुकान के अंदर बहोत सारा सामान रखा हुआ है यह दुकान पठाको की है।

इस चित्र मे हमे एक होटल तथा भोजनालय नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक कार सर्विस सेंटर नजर आ रहा है।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

ए_टी_एम के पास हमें एक दुकान नजर आ रही है।

दुकान के पास हमें कई कार नजर आ रही है।

इस चित्र में हमें एक बकरी नजर आ रही है बकरी का रंग सफेद है।

यहां हमें एक घर नजर आ रहा है घर के बाहर दो टोकरी रखी हुई है।

इस दुकान का नाम है श्री बालाजी प्लाई एंड हार्डवेयर ।